खम्बा लगा है बहुत सारे पेड़ - पौधे लगे है एक व्हाइट कलर की कार खड़ी है बहुत सारे टू व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी है।

साइकिल खड़ी हुई है बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है बहुत सारा कार खड़ी हुई है खंभा लगा हुआ है।

नीचे टाइल्स लगी हुई है रेक और बनी हुई हैं।

बहुत सारे फूल और बलून लगे हुए हैं कुर्सी लगी हुई है इस चैनल लगा हुआ है।

यह एक दुकान है टंगी हुई हैं सामने प्रणाम का बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक शादी का गार्डन है यहाँ पर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई है।

एक अंकल खड़े हुए है टेबल रखी उस पर बहुत सारा ग्लास मटके रखे हुए है बहुत सारी कुर्सिया रखी हुई है।

सामने एक लाइट का बोर्ड लगा हुआ है पटियां लगा है एक अंकल पास में खड़े हुए हैं एक दुकान लगी है पास में और --